फूल रखे हुए है और क्या कहते है पीछे आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जायेगा वाइट कलर का और देखिए यहाँ पर--

यहाँ पार आप को देखने को लिए मिल रहा हैं एक रोड उस ऑटो खड़ा हुआ हैं जिस का लाल कलर का लाल और हारे कलर का ऑटो हैं बाहर क्या कहते कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

यहा पे ये एक गार्डन है यहा रोड हेगा यहा पर भेस-गैया खड़ी हुई है ईसके बाजु में बहुत सरे पेड़ भि है एक छोटी सी नदी भी है जिस्मने पानी भरा हुआ है।

गिट्टी पड़ी हुई है इस के अलवा पेड़ पौधे लगे हुये हैं सामने कुछ दो पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं इस मे आप को और यहाँ पर कुछ लड़के भी खड़े हैं।